मेरे सामने एक चश्मे की दुकान है।

मेरे सामने एक ओंकार मोटर रिपेयरिंग शॉप है।

स्टेज के आस पास कुछ लोग हैं।

मेरे सामने एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल है।

टेबल और काउंटर लगे हुए हैं।

आसपास व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

और आसपास शादी का माहौल है।

डेकोरेशन की गई है अलग अलग कलर के फूलों और कपड़ों से।

सड़क के एक साइड पेड़ लगे हुए है और दूसरी साइड कुछ पानी है।

और आस पास घास उगा हुआ है।

पैलेस के नीचे बहोत बड़ा बिछा हुआ है।

मेरे सामने एक शॉप है जिसमें बहोत सी बुक्स है।

शॉप में कुछ कुर्सियां भी है और कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं।

और इसके आसपास और भी बहोत से ऑटो रिक्शा है।

इसके आसपास कुछ लोग हैं जो के--

मेरे सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

मेरे सामने एक वैन है जिसका कलर व्हाईट और ऑरेंज है।